हर साइड में कांच के बॉल्स लगे हुए हैं।

और एक बड़ा सा सड़क गया है।

यहां एक रूम है जिसका कलर व्हाइट कलर का है और इसमें एक सोफा और एक मिरर है और सामने मुझे एक अंदर जाने का रास्ता दिख रहा है।

इसमें सामान रखे हैं मॉनिटर रखा गया है और उसके बगल वाले रूम में एक चेयर और एक टेबल है।

जिसका नाम आयुष्मान हॉस्पिटल है।

और अंदर आने का एक मेन गेट है।

और एक टेबल दिख रही है जिसपे सॉस और पानी के बॉटल्स रखे हुए हैं।

और नीचे कुछ शटर लगे हुए हैं बड़े बड़े से।

यहां सामने दुर्गा पूजा हो रहा है इसमें माता जी की मूर्तियां हैं एक शेर है।

एक ने व्हाइट और ब्ल्यू कलर की जींस पहनी हुई है।

यह मैकेनिक्स खड़े हुए हैं ब्ल्यू कलर का जैकेट यूनिफार्म पहन के।

इसमे बहुत सारे लोहे रखे हुए है।

बगल में एक रूम है।

ये साइड में पेड़ पौधे लगे हुए है।

और एक गमला दिख रहा है येलो कलर के फूल का।

सामने मुझे एक स्विमिंग पूल दिख रहा है जिसमें ब्लू कलर का पूरा पानी भरा हुआ है।

इनका कलर ब्लैक एंड ग्रे कलर का है इसमें एक मिरर लगा हुआ है निचे वॉश बेसिन है।

यह हरी हरी घासे खा रही हैं।

बहोत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं इसमें कांच की खिड़कियां हैं।

साइड में मुझे एक पेड़ दिख रहा है।

आस गमले लगे हुए हैं अंदर मुझे चेयर दिख रही है।

अंदर चेयर रखी हैं ब्लैक कलर की साइड --

मुझे शैडो दिख रही हैं ढेर सारी।

स्टेज के ऊपर दो लड़की खड़े हुए हैं और एक आदमी बैठा हुआ है।

यह एक शाइकल की दुकान है जिसपे अलग अलग तरह की शाइकल हैं।

और मुझे सामने एक मॉनिटर दिख रहा है।

सामने मुझे एक टेबल दिख रही है जिसपे आंखे चेक करने वाली मशीन है।

दादा जी दिख रहे हैं जिन्होंने स्टॉल ओढ़ी हुई है और एक आदमी दिख रहा है।

ऊपर करबोर्ड्स रखे हुए है मशीन के--

नीचे एक आदमी बैठा हुआ है।

सामने एक लोहे का गेट है।

और उन्होंने ग्रीन कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है पीछे मुझे पेड़ दिख रहा है पर्पल कलर का।

सामने मुझे एक आदमी दिख रहा है जिसने ब्लैक शर्ट और नीचे पैंट पहना हुआ है।

सामने मुझे बहुत सारी भीड़ दिख रही है।

जिसमें पत्थर दिख रहे बहुत सारे।

उन पत्थर के ऊपर हरे हरे पेड़ हैं।

और उसके पीछे भी एक छोटा सा झरना है।

पूरा पानी भरा हुआ है आसमान पूरा नीला हुआ है।

पाइप लगी हुई है डम्बल है छोटे छोटे--

ऊपर जीजस का सेम्बल लगा है प्लस का।

और ये पूरा ऑरेंज कलर का है।